यहाँ पर एक रोड है रोड के बाजू में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर फूड अड्डा--

इधर एक अ बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग है पीला।

अ वो बीयर का घर है और इधर बहोत सारी झाड़ियां भी है और--

पानी का कुआं भी है इधर जिसके अंदर पानी है।

उन्होंने व्हाइट कलर का ब्राउन कलर का ऐसा शर्ट पहना हुआ है।

और इधर बहुत सारे बुक्स पड़े हुए है।

और काली कलर की पैंट ऐसा पहना हुआ है इधर लाइट भी है।

और सीढ़ियों का रंग है लाल और ये स्टेडियम का ए--

यह एक रेलवे का प्लेटफार्म है।

यहां पर एक घर है जिसका रंग सफेद है और इसके बाहर एक गेट भी है।

ओ गेट का रंग भी सफेद है आसमान में बादल छाए हुए हैं रोड है रोड के साइड में छोटे छोटे घास आए हुए है।

और यह घास का रंग है हरा और इस गेट के अंदर एक घर भी है जिसका रंग सफेद है।

और और इस इसपे दीवार भी है दीवार का रंग है सफे--

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के यहां बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ब्लू रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

और इधर बाहर गाड़ीया भी खड़ी है।

और आसमान भी दिख रहा है उसके बाजुमें भी घर है।

और फ्लोर का जो रंग है ओ है काला और इधर बोर्ड भी लगे हुए है।

इधर फैन भी लगा हुआ है और ये जो घर है वो घर का रंग है सफेद।

जिसके यहाँ बहोत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं।

और इधर दो फैन भी लगे हुए है एक ए_ सी लगा हुआ है और लाइट्स भी है।

जिसपे बहोत सारे भजिया रखे हुए हैं आसमान दिख रहा है घर भी है बहोत सारे लोग हैं जो भजिया ले रहे हैं और इधर एक गाड़ी भी हैं।

यह एक दुकान है दुकान की अंदर कपड़े--

आसमान भी दिख रहा है। बाजू में एक झाड़ भी है।

और इधर बहोत सारे मोबाइल्स भी रखे हुए हैं।

इधर अ बलुन्स भी लगे हुए हैं जिनका रंग है सफेद पीला--